यह पेड़ बहुत ही बड़ा और सुन्दर है ।

यह पुल बहुत ही मजबूत है और यह पुल बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इस पुल के ऊपर बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती--

यह झरना का पानी जंगलों में जा रहा है यहाँ पे एक बड़ा-सा घना सा --

इस मॉल में दो लिफ्ट लगे हैं जो लिफ्ट सीढ़ी वाला लिफ्ट है ।

है। यह सैलून बहुत बड़ा और सुन्दर है। यहाँ पे लोग --